सब कमेंटरी करने वाले सामने बैठे है।

काम कर रहै है साइड में लकड़ी- वकड़ी सब रखा हुआ हैं।

ये डांस करने का स्टेज है सामने लड़किया डान्स करने गई है साइड में डी.जे. लगा हुआ है।

दीवाल में लाइट दिख रहा है सामने--

पौधा अउ पीछे--

ये एक मछली दुकान है जहाँ पर मछली प्लाट में रखा हुआ है।